एक ए बैनर लगा हुआ है और यहां पर यहाँ का यहाँ की दुकान का गेट कांच का बना हुआ है। सामने एक --

यहाँ पर एक झरना बना हुआ है। जहां पर बीच पत्थरों में से पानी आ रहा है।

यहां पर एक बिल्डिंग बनी हुई है और यहां पर एक व्यक्ति मसाल लिए खड़ा हुआ है। यहां पर चारों तरफ लाइटें लगी हुई हैं और --

ईटें भी रखी हुई हैं और यहाँ पर एक --

एक पाइप भी लगा हुआ है ऊपर लाइट लाइटो के तार लगे हुए हैं और यहाँ पर चारों तरफ पेड़-पौधे लगे हुए हैं और छोटे-छोटे सी --

एक चेयर पर एक चैर पर एक व्यक्ति बैठा है जो कि गाइड है और यहाँ पर दो व्यक्ति ओर बेठे हैं। यहाँ पर --

सफेद कलर से स्कूटर खड़ा हुआ है। यहां पर पीले कलर से कैरेट रखी हुई हैं। लाइट के --

खम्बे लगे हुए हैं। यहाँ पर बहोत सारे दुकान खुली हुई हैं। हरे-हरे पेड़ पौधे लगे हुए --

यहाँ पर एक पीले कलर से बिल्डिंग बनी हुई है जिसमें ग्रीन कलर से पट्टियाँ बनी हुई हैं।

चारों तरफ फूल फूल लगे हुए हैं गुलाब के यहाँ पर।

यहाँ पर एक एरोप्लेन खड़ी हुई है जो कि भाइट और ब्लू कलर से बनी हुई है। यहाँ पर कुछ व्यक्तियों ने हरे कलर के कपड़े पहने हुए हैं। यहाँ पर एक --